ऊपर में झूमर वगैरह लगे हुए हैं इतना अच्छा डेकोरेट कर रखा है।

कपड़ा ढका हुआ है और अन्दर ब्लैक कलर के सोफे भी हैं उसके साथ में भी कोई बैठा है वो नहीं दिख रहे हैं और ऊपर देखो फर्नीचर की--

अब ये देखो ये है जहां पे कार पार्किंग करते हैं पार्किंग तो सुना ही होगा ठीक है यहां पे देखो आपने देखा ही है यहां पे कितनी सारी--

हां हमें दिखाइए ये येलो कलर की मशीन नहीं यही काम करती है।

जैसे मिट्टी खट्टी हो जाती हैं कही जम जाती हैं वह उठवानी है तो ये काम आती हैं वहां पे मिट्टी वगैरा उठवाने में ठीक है।

ये बॉयज है दो उन्द खेल भी रहे है दौड़ भी रहे है और एक चीज है यहां पर देखो ये ये कहते है जाली की ये लगा रखी है जहां खेलते है।

खेल भी रहे हैं दो बैठे हैं साइड में।

इसमें आपको दिख ही रहा होगा मजदूर काम कर रहे हैं और नीचे देखो कितनी सारी सीमेंट ये रखी ऊपर देखो पुल सा बना रखा है।

अब आपको ये दिख रहा है ये कंपनी सी है जिसमे देखो ब्लू भी दिख रहा है रंग मे--

अब आपस में दो व्यक्ति देख रहे एक सैलुन वाला और एक जो करवा रहा है ठीक है।

अब इसमें आपको दिख रहा होगा रसियां लाल रंग की ब्लू कलर की--

और घर के फ्लैश वगैरा मिलते हर एक चीज मिलते हैं यहां पे--

इसमें हैं सा आठ गिटार हैं ठिक हैं और पीछे एक कुर्सी रखीं है और जिनपे ये बैठे हुए वो भी कुर्सियों पे ही बैठे हैं।

अब इसमें आपको क्या दिख रहा है ऊपर लिखा है करियर बाहर से दिख रहा है ना हमें।

और एक के हाथ में गिटार है ओ खड़ा है।